जिसमें काफी हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह फोटो एक ए_सी का है।

अलग अलग कलर की चेयर्स रखी हुई है जो काफी सुंदर लग रहे हैं।

तथा इसके आस पास काफी ग्राउंड है जो खेलने के लिए उपलब्ध है।

क्रेन मशीन जे_सी_बी मशीन खड़ी हुई है जिनके सामने एक--

किसी खेल का टूर्नामेंट रखा गया है।

हिंदू महिलाएं किसी तालाब या बड़ी नदी के पास--

मौसम भी काफी कुहावना लग रहा--

रेड कलर की साइकिल रिपेयरिंग कर रहा है तथा दुकान के बाहर कई--

टहल रहे हैं तथा एक्सरसाइज कर रहे हैं।

यह फोटो किसी मंदिर का है।

पहाड़ का हैं जिसमें नीचे एक--

जिसको सिर्फ दिखाने लोगो को दिखाने के लिए खड़ा किया गया है यह फ़िलाल चालू नहीं है।

यह किसी कंपनी के अंदर का फोटो है जो पूरी टीम द्वारा बनाई गई है उसमें काफी वर्कर्स --